येह जो है पिलर ढल रहै है उसका लोहा वो लोग पकड़े हुए है और एक लड़का खड़ा है उसके हाथ मे समान है पीछे के साइड जो है वो बंजर जैसी जमीन हो रही है।

ये जो है गिटार है इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं। बोक्स में जो है कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है पीछे के साइड जो है काउंटर जैसा दिख रहा है उस के ऊपर भी कुछ सामान रखा हुआ है। एक लेपटोप दिख रहा है।

ये जो है एक अस्पताल दिख रहा है उसके ऊपर जो है आसमान दिख रहा है वायरिंग के जो है तार्स दिख रहे है ब्लू कलर के जो है कांच दिख रहे है।

कार्न फ्रूट शॉप है सीन्स नाइनटिन सिक्सटी वन की बनी हुई है उसके साईड में जो काफी बड़ा जो एक प्लांट दिख रहा है अंदर के साइड में --

कॉर्नर में जो एगो साइड में बहुत सारा सामान रखा हुआ दिख रहा है अंदर गाड़ियां दिख रही है कुछ लोग बैठे हुये है।

ये जो है फ्रूट्स शॉप है इसमें जो काफी सारे फल फ्रूट्स रखे हुए दिख रहे है मैंगो ओरेंज बनाना और वाटरमिलन एक्स्ट्रा सब रखा हुआ है।